यहां पे फ्रीजर रखा हुआ है और मेनू भी लगा हुआ है बाहर दरवाजे पे और यहां पे फ्लावर की डेकोरेशन की गई है जिसमें हरी पत्तियां और --

यहां पे और भी टिकट वगैरा भी लिए जाती है यहां पे दो डस्टबिन रखे हुए नीले कलर के यहां पे एक चेयर लगी हुई है।

बाहर ईंटों के पास एक मोटरसाइकिल भी पड़ी है।

और नीचे कप प्लेटें वगैरा और ये आइटम है जो गिफ्ट देने के लिए काम लिए जाते हैं यहां एक बड़ी एल_सी_डी भी लगी हुई है।

यहां पे एक रेड कलर की दुकान जैसा दिखाया गया है यहां पे बहुत आगे तीन चार लोग खड़े हैं भीड़ हो रखी है आगे लाल कलर की एक बाल्टी भी है।

ये एक दुकान दिखाई गई है जिसमें बहोत सारे डब्बे रखे हुए हैं उसमें कुछ पीले रंग के डब्बे दिखाई दे रहे हैं कुछ लाल कार्टून में समान --

और पीले रंग की शटर है पर यहां पे कोई नहीं है अभी।

यहां पे बहुत सारी पीली गाड़ियां खड़ी है और पीछे एक बड़ी स्कूल बनी हुई है पास में एक बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।

गाड़ी खड़ी है यहां पे ये बड़ी कड़ाई भी दिख रही है इसमें आगे रेलिंग लगी हुई है रेलिंग पे पौधे लगे हुए है।

ये एक पार्क है जिसमें हरी भरी घास लगी हुई है पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहां पे सुंदर हरे डिजाइन के दो चेयर रखी हुई है।

ब्लैक कलर के गोल्डन कलर की डिजाइन की गई है यह येलो कलर की बनी हुई है यहां बच्चे पढ़ने के लिए आते --

जो गंदा पानी है यहां पे हरी घास लगी लगी हुई है और बड़े बड़े पेड़ लगे हुए --

पे यहां पे मिट्टी से भरी हुई है।

छोटी कारें और सब चित्र बनाए गए हैं।

और भी बहोत सारे मिक्सअप इस स्कूटी के कलर यहां पे दिखाए गये है इसकी अभी ओपनिंग हुई है यहां पे रेड कलर के--

यह भारतीय बैंक एस_बी_आई की फोटो है यहाँ पे एक बूढ़े बूढ़ी औरत और भी आदमी भी बैठे हुए हैं।

यहां पे ट्रेने आती जाती रहती है यहां बहुत सारी टैक्सियां खड़ी है और बहुत सारे ग्राहक भी हैं यहां पे।